पतला सा ब्रिज बना हुआ है चारो ओर घनघोर पर्वत बड़े-बड़े पेड़ पछ पौधे लगे हुए हैं।

कंपटीशन से संबंधित सभी विषयों जैसे मैथ रीजनिंग साइंस जी.के. इतिहास --

कई प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही अनुकूलित एवं शांति है।

यहां पर कुछ वाद्ययंत्र जैसे वीणा तानपुरा ढोलक तबला।

घंटा बांसुरी आदी दिखाई दे रही है जिनमें कुछ लोग बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

तथा कांच के गेट पर एयरटेल पोस्ट पेमेंट एवं बिल रिचार्ज का पोस्टर लगा हुआ --

यह एक धार्मिक स्थल है। जो की गुफा के रूप में है यहाँ पर एक लड़का --

इस रास्ते पर जाम लगा हुआ है जहाँ पर कई सारी ऑटो और बसे खड़ी हुई है ।

के कारन से यह बहोत ही बहुत जर्जर एवं दर्शनीय हो गया है।

इस गार्डन को घुमने के लिए ये छोटी-सी प्यारी ट्रैन बनाई गई है जिसमें से बैठकर --

एक महिला अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए खड़ी हुई है तथा उसके --

वह एक चमकदार रोशनी के रूप में पूरे पानी में चमक फैला देता है।

इस कारखाने में कुछ मटेरियल ऊपर पाइपों के द्वारा मशीनों तक पहुंचता है तथा मशीन से --

कुछ पेड़ हरे-भरे लगाए गए है इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था।

यह एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके चारों ओर बड़े-बड़े वृक्ष लगे हुए है इस तालाब में --

यह एक राशन की दुकान है जिसमें रसोई घर के संबंधित सारे खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं।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

तथा उसके अंदर कांच में एक रानी की प्रतिमा बनाई हुई है नीचे पुराने पत्थरों का डिजाइन बनाया गया है।

यह रेलवे स्टेशन में खड़ी हुई भारतीय ट्रेन हैं तथा ये जो पाइप दिख रही है इनसे --

यह एक स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लासेज है जिसका नाम पोस्टर पर इंग्लिश गुरुकुल लिखा है।

एक बिजली का मीटर लगा है तथा दो साइड में मनीप्लांट के गमले रखे हुए --